यहां पर ईट से बनी मकाने भी नजर आ रही है।

यहां की दीवारें हरे रंग की हैं जिस पर नीले और सफेद गुब्बारो से सजावट की गई है।

यहां पर कुछ बर्तन रखे हुए नजर आ रहे हैं।

और उसके चारों तरफ घने पेड़ भी दिखाई दे रहे हैं।

यहां एक बोर्ड लगा हुआ है जिसपर लाल रंग से हिंदी ने इंडेन लिखा हुआ है।

सामने एक सफेद रंग की दीवार नजर आ रही है।

बाईं ओर एक और छोटा बोर्ड है जिस पर दिव्या पैथोलॉजी लैब लिखा हुआ है।